फूल रखे हुए हैं कुछ कमरे बने हुए हैं।

शॉपकीपर है जो उस लड़की को इसे आइसक्रीम दे रहे हैं।

भाई एक एक घड़ी रखी हुई है।

गवरमेंट सीक्रेट सीक्रेट --

उसके बाहर काफी ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई है कुछ व्यक्ति आपस मे बातचीत कर रहे हैं।

यहां एक अह खुले मैदान में हरी भरी घास खड़ी हुई है हरियाली है।

यहां एक काफी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर काफी ज्यादा--

छोटे कुछ बड़े बड़े पेड़ यहां पे काफी ज्यादा संख्या में पा--

पेड़ है वहीं बगल से एक रास्ता गया है जो कच्चा रास्ता है।

ये कुछ कुरस कुछ गददे वाली टेबल है कुछ --

एक बाल्टी बाहर कुछ दो-तीन कार रखे हुए--

और ये ग्राउंड में गोल घेरे में एक छोटा सा पार्क बना हुआ--

यह एक मार्केट है जिसमें कुछ--

यह एक पहाड़ी इलाका है जिसमें काफी ज्यादा हैरानी है दूरे एक पहाड़ बना हुआ--

जो काफी ऊंचाई पर है आसपास कुछ पत्थर रखे हुए है।